यहाँ सामने में एक बड़ा सा हॉल जैसा दिख रहा है।

गेट के नीचे कुछ सीढ़ी है चढ़ने वाला जो दिखाई दे रहा है।

और रेड के उस पार में बोहत बड़ा एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो क्रीम कलर से --

यहाँ पे एक दुकान है जिसपे एक बोर्ड लगा है। जिसपे ए.आर.के. कॉफ़ी अ स्टाल लिखा हुआ है।

अ-यहाँ पे एक और बिल्डिंग है वाइट कलर में साइड में और वहाँ पे कुछ एक आदमी खड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे |

वो शर्ट पहने हुए है कुछ अपने आगे बाँधे हुए है।

यहां सामने में खाली जगह दिख रहा है।

और यहाँ पे एक ताला भी लगा हुआ है। सादा सामने में कुछ खली जगह भी दिखाई दे रहा है ऊपर में एक--